बाहर में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है हमारे घर में पानी आ जाता है पानी आने के लिए सरकार को तो मदद करना ही पड़ेगा | ना मदद करे तो हम लोग कैसे या कुछ कर पाएंगे हमारा तो बहुत दिक्कत है पानी में न निकल पाना निकल जाने पाए सरकार को सहायता करना चाहिए हमारे पानी भरने

गो माता लक्ष्मी होता है हमें घर में गाय रखना चाहिए जैसे की दाना सखरी हुआ बहुत तरह का हम बनाते है खाना उना बच जाता है तो उ फेकने से अच्छा है की हम माल जाल को खिलाए वो लक्ष्मी होती है लक्ष्मी घर में रखना चाहिए हर इंसान गाय हमें दूध देती है बहुत सहायता होती है दूध से बहुत कुछ करते है खाते है।

अगर सरकार हमको मदद कर दे ऐसे मकान में तो कोय दिक्कत न हो हमें कुछ मदद चाहिये ऐसे मकान में रहने के लिए बहुत पुराना मकान हो उससे कुछ सहायता-उहता मिल जाये तो कोय दिक्कत नहीं।

इ कह कहते है की महजिद में बहुत इ होते हैं दुवा में ताकत होता है सभी को महजिद जाना चाहिए दुआ --